यह एक अलमारी है | यह अलमारी --

बहुत सारे स्टाफ लोग रहते हैं यहाँ बहुत सारे कपड़े मिलते हैं अच्छे-अच्छे कपड़े रहते हैं रंग-बिरंगे बहुत सारे आदमी आके यहाँ कपड़ा लेते हैं और कपड़ा पहनते भी --

यह एक सैलून है। यह सैलून यह सैलून में यहाँ पर बाल काटा जाता है दाड़ी बनाया जाता है मुहँ फेसिअल किया जाता है। यहाँ पर रोजाना बहुत सारे लोग आकर मुहँ फेसिअल कराते है बाल कटाते है --

यहाँ पर ये पंडित जी लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं शाम में लोग जाकर प्रसादी लेते हैं हिन्दू धर्म के लोग आकर इस मंदिर में पूजा करते हैं ।